यहां पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है एक डला खड़ा हुआ है बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ उस --

ये एक मशीन है यहां पे बहुत सारी लोहे की मशीन खड़ी हुई है।

और इसके ऊपर से प्रक्रिया बनी हुई है और यहां पे बहुत सारी घास और पेड़ खड़े हुए हैं।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

और सूज निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

और इन पंडितों के पास एक एक झोला और नीचे टांट बिछी हुई है।